और उसमे एक व्यक्ति बाल्टी से कुछ डाल रहा है मशीन के अंदर।

और एक मशीन चलाने के लिए साइड में खड़ा है।

और गोल-गोल आकृति से भी इसको सजाया गया है।

जो चित्र में दिखाई दे रहा है और पीछे गेट पर एक पर्दा लगा हुआ है।